कार जो है स्टील कलर का है। साइड में एक व्हाइट कलर का बाउण्ड्री बना हुआ है जिसके ऊपर एक लाइट जल रहा है उसके पीछे बहुत सारा अँधेरा है। साइड में कुछ गछ है ग्रीन कलर का।

ऊपर एक बोर्ड बना हुआ है जिसमें एक जाली लगा हुआ है। साइड में बहुत बड़े-बड़े घने से उम् गछुठे हुए हैं। इस साइड में कुछ लोग बैठे हुए हैं। काले --

बडा- बड़ा सा रोड है जो व्हाइट कलर का है। एक आदमी जा रहा है जिसने पिंक कलर का शाट पहना है।

दो तल्ला सा एक घर है जिसके ऊपर में पूरा काँच लगा हुआ है ब्लू कलर का। नीचे एक दुकान का शटल डाउन है दूसरी दुकान में --

और उस साइड मे एक बाइक खड़ी हुई है एक कोठा घर है जो ब्लैक कलर का है जिसमे ग्रीन कलर भी है साइड मे ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है इस साइड मे बहुत सारे गच्छ है जिनके ग्रीन पत्ते --

बोहोत सारे गछ के पत्ते हैं जो कुछ डीप ग्रीन कुछ हल्के ग्रीन कुछ येलो कलर के हैं जिनमें लाइटिंग आ रही है।